और एक एल_इ_डी टी_वी भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

इसमें बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

और यहां पर कुछ प पेड़ पौधे भी हैं।

यहां पर आप देखेंगे कि यहां लाइट भी जल रही है।

यहां आप देख सकते हैं कि यहां आपको एक रोड भी बना हुआ दिखाई दे रहा होगा।

यहां पर मुझे एक बैनर भी टंगा हुआ दिखाई दे रहा है।

और आप देखेंगे कि यहां पर दो गाड़ी भी रखी हुई है टू व्हीलर ।

और एक यहां पर साइकिल रखी हुई दिखाई दे रही है।